यहां पे सामने एक बड़ा सा रूम दिख रहा है।

और एक स्टेज बना हुआ है।

और बड़ी सी लाइट लगी हुई है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे लाइट्स हैं।

छत दिख रहा है बाहर पेड़ दिख रहे हैं।

बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही हैं।

यहाँ सामने एक अ बड़ा सा अ हॉस्पिटल दिख रहा है।

एक बड़ासा रेस्टोरेंट दिख रहा हैं।

क्रिकेट खेलने के लिए है।

सामने अ बल्ला रखा हुआ है।

और बहुत सारे टेबल चेयर रखे हुए हैं।

टेबल पे स्टील की प्लेट रखी है।

और सीढ़ियों के बीच में स्टील का रेलिंग लगाया है।

मुझे यहां पे पूरा रेत-रेत दिख रहा है।

पेड़ दिख रहे हैं बड़े-बड़े।

वॉल पे एक पोस्ट टंगा हुआ जिस पे जेड एफ_एम लिखा हुआ है।

अंदर पोल है बहुत सारे लाइट्स लगी हैं।

विंडो है बड़ी सी जिसने ट्रांसपरेंट --

यीशु मसीह चर्च लग रहा है।

और लाइट्स लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और बिल्डिंगें दिख रही है आसमान दिख रहा है।

आह फुटबॉल टेनिस खेलने के लिए एक लड़का है।

और रेड कलर की टी_शर्ट और--

कॉमप्लेन बोर्नवीटा के पैकेट रखे हैं।

और ग्रीन कलर और वाइट कलर से मस्जिद पेंट किया हुआ है।

उसने वाइट कलर की टोपी पहनी है।